यह फोटो रिवर फंड का हैं यहां पर अटल ब्रिज दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारी कलर्स की साड़ियां दिख रही है अलग अलग कलर्स की साड़ी है साड़ी के जो बोर्ड है उस पर एक लेडी का पिक दिख रहा है।

ये टोरंट पावर का फोटो है यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है चेयर पर और यहां पर नीचे--

अ होल में फ्लावर्स से डेकोरेशन करा हुआ है एंड बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं यहां पर।

कार के पास ही में एक होटल है और यहां पर बहुत सारे ट्रीज नजर आ रहे हैं बहुत सारे जेंट्स हैं जो यहा पर दिख रहे हैं।

एंड फोटो में कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है।

और उसके बाजू में सुरभि एक्सपोर्ट्स कर कर एक स्टोर है।

और बहुत सारा कूड़ा कचरा यहां पर फैला हुआ हैं।

यहां पर बहोत ही ब्यूटीफुल जाली से डेकोरेट करा हुआ है एंड वहां पर येलो एंड व्हाइट कलर का--

जो नीला कलर का दिख रहा है।

इस फोटो में एक स्टैचू नजर आ रहा है जहां पर स्टैचू के आसपास बहोत सारे लोग हैं।

इस फोटो में एक रिवर दिख रही है।

और लोग यहां पर फंक्शन अटेंड करने आए हैं।

एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

उसके पीछे और दो तीन घर बने हुए हैं और ऊपर आसमान एकदम साफ दिख रहा है।

और बहुत सी पब्लिक आ जा रही है व्हीकल लेकर दो तीन रिक्शे भी है और कार्स भी पार्क करी हुई है।

और आस पास बहोत से अ लोग हैं जो पिकनिक मानने आए हैं।

और नीचे बहुत सारी कार्स वगैरह है।